ये चित्र मे बुकिंग का है जहाँ पर बुक करते है लोग वन और टू है।

यह चित्र मे एक ट्रेन का है जिस मे से लोग उतर रहे है।